इसके ऊपर एक छत है छत में बहुत सरे लोग बैठे हैं निचे काउंटर लगा है काउंटर के ऊपर बहुत सारी इधर बाहर मैदान में गाड़िया खड़ी है।

जिसके ऊपर एक आदमी बोहोत सारी लकड़ियाँ अपने कंधे पे लेकर जा रहा है। उसके सर पर मफलर बांधा हुआ है।

इसके ऊपर एक कप बना हुआ है इधर सामने एक का-काउन्टर बना है ऑरेंज कलर का इसके सामने और एक स्टूल रखा है ब्लैक कलर का --

इधर एक रास्ता है इसपे एक आदमी बैैैठा हुआ हैं।

--एक ऑफिस के अंदर का जगह है जहाँ पे तीन सोफे रखे है काले कलर के इधर एक काउंटेबल लगा है व्हाइट कलर का इसके ऊपर ऑरेंज कलर का डिज़ाइन पीछे ट्रांसपेरेंट --

इधर एक छेद है जिसपे गाड़ी वाॅश होती है इधर बहुत सारे खंभे लगे हूए हैं।

यह एक ईशा मन्दिरा है जिसकी दो फ्लोर है जिसका कलर पींक है ऊपर से उसके--